मैकेनिक है वहां पर जो कि गाड़ी का सुधारता है।

वो एक वो हाती के सोर पर बैठा हुआ है और अपने फोटो खिचवा रहा है।

जिसमें से एक आदमी ने सफेद कलर की शर्ट और गोल्डन कलर का पैंट पहन रखा है और एक आदमी ने --

भी हैं उसके पास एक मोटर साइकिल पर एक आदमी बैठा हुआ हैं ऊपर देखिये पेड़ भी नजर आ रहा हैं ।

मुझे यहां बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही है।

ऐसा लग रहा है जैसे वो बेचने के लिए कोई सी दुकान पर सजाने क रखा हुआ है बहोत सारी है ये--

मुझे यहाँ शानदार सा बोहोत सुन्दर सा एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहा पर पिली पिली सी रोशनी सफ़ेद सी--

बहोत सुंदर लाइट का नजारा दिखाई दे रहा है और उसके आगे--

मे बहोत सारी गाड़ियां औ औ बहोत सारी जनता दिख रही है।

मुझे यहां बहोत सी बड़ी बिल्डिंग यानि दिखाई दे रही है।

ओ बाहर कुछ छोटी छोटी हरी कलर की टंकीया भी रखी हुयी है ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ है अ टंगा हुआ है।

मोबाइल की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर छां कांच का एक बहुत सुंदर सा गेट लगा हुआ है।

मुझे बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारा सामान बिखड़ा पड़ा हुआ है।

क्रेन सर्विसेज उसके पास में एक मोटरसाइकिल रखी हुई है।

मुझे नदी दिखाई दे रही है उस नदी के बीचो बीच में एक --

बनियान और एक चड्डा सफ़ेद कलर का पहन रखा है वो सूरज की साइड में धियान से देख रहे है।

फर्श भी दिख रहा है पेटियां भी नजर आ रही है।

मशीन हैं उसमें एकदम फर्श भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक बाउंडरी है।

भी लगे हुए है बड़े बड़े और उसके पास में--

दुकान के अंदर बोहोत सारे पंखा लगे हुए है जो की बंद है ।

यहां पे बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं डेकोरेशन और--

नीचे टेबल कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं और नीचे फर्श भी हैं लाल कलर का बहुत सुंदर डेकोरेशन हैं ।

एक लाल कलर का बहुत सुंदर सा पर्श दिखाई दे रहा है उपर पंखा नजर आ रहा है जो की बंद है।

रखा हुआ है गोर से वो अंदर भी दिखाई दे रहे है सब पूरा सामान जमा हुआ है तरीके से--

मुझे यहाँ ये एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर बहोत सारी गट्टी है।

और वहाँ पर पास में आलू प्याज़ भी दिखाई दे रहे है नीचे जमीन पर सभी मिर्ची विरचि सभी भरे हुए है जो ये कार्टून में लगा एगा।

मुझे यहाँ पे बहत सारे छोटे छोटे कुत्ते नजर आ रहे है।

और निचे सोफा भी दिखाई दे रहा है जो की लाल कलर का है और ड्रेसिंग टेबल है जो छोटीसी बहुत सुंदर डेकोरेशन है।

और कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ आदमी खड़े हुए है ।

मुझे यहां एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जहां हुक्का पानी रखा हुआ है।

अम इनभर्टर चालू होता है बैठ ने का कुर्सियां भी रखी हुई है।